और जो ये ग्राउंड पे होती है उसकी रंग ब्लू है।

और अ जो दीवाल है वो लाल रंग की है उसमे बाउंड्री की गई हुई पीले रंग से।